और यहां पे ढोल भी रखा गया है।

और यहां पे रंग बिरंगे लाइटें जली हुई है।

और मोटरसाइकला भी खड़ी हुई है।

और यहां पे टाइले भी बिछी हुई है।

यह एक रास्ता है और इस पे वो आदमी जा रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे है।

यह एक पुल है। पुल पे कु आदमी भी जा रहे हैं।

और पीछे दो कुर्सियां भी रखी हुई है और एक आदमी भी नजर आ रहा है।

यहां पे अलग अलग तरह की दवाइयां रखी हुई है।

और यहां पे ईंटे भी पड़ी हुई हैं।

यह एक पहाड़ है और यहां से पानी आ रहा है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और यहां पे औरते भी नजर आ रही है।

और यहां पे मेज और कुर्सियां भी नजर आ रही हैं।

यहां पे एक बाइक भी नजर आ रही है।

और नीचे बहोत सारे तार पड़े हुए हैं और घर में सारे मे टाइले लगी हुई है।

और ऊपर को लाइन भी जा रही है तार--

और यहां पे एक डस्टबिन भी रखी हुई हैं।

यहां पे एक टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे बहुत सारे आदमी भी बैठे है।

एक आदमी चित्र के नीचे कुछ लिख रहा है।

और यहां पे टेले भी लगी हुई हैं और यहां पे विंडो भी है।

यह पहाड़ है और पहाड़ में से पानी निकल रहा है।